यह एक हॉस्पिटल है यह हॉस्पिटल का नाम --

यह एक पैरलेस ऑफिस है। यह ऑफिस में बहुत से कर्मचारी काम करते है।

बड़ी-बड़ी गाड़ियां ठीक की जाती है यह गैरेज में डेली टोटो ठीक किए जाते हैं और यहाँ पर अच्छा सर्विस भी दिया जाता है।

जैसे छोटे से लेकर बड़ी तलवारे भी बनी हुई है उ --

जहाँ पर अनुमति मिलने के बाद ये इस ऑफिस के अंदर जाने की अनुमति मिलती है।

यहाँ पर लेनोवो का मोबाईल भी मिल जाता है। यह शो-रूम बहुत बड़ा शो-रूम है यह शो-रूम सूरत में है।

यह कॉलेज बहुत ही बड़ा कॉलेज है यह कॉलेज में बहुत से बक्से रखे हुए हैं जिसमें किताबें और पेपर रखी हुई है ।